उन्होंने ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई है। साइड मे एक चेयर रखी हुई है अ जोकि रेड कलर की चेयर है बड़ी सी।

यहाँ पर एक ये मशीन लगी हुई है बहोत बड़ी मशीन है शायद यह क्लॉथस बनने की मशीन है। क्लॉथ यहाँ पे --

उसके ऊपर भी एक स्टेज प्लस का निशान बना हुआ है एक अंकल है जो की माइक में कुछ गा रहे है या फिर कुछ बात कर रहे है और उनके पीछे पियानो बज रहे एक अंकल --